कोलेज हैं भाई थयु वाईट से रंगा हुआ हैं दिख ने बहुत सुंदर लग रहा हैंचरो पते राग हुआ हैंऔर आगक बगल पेड़ हैंऔर कुछ बलिये।

और अगल-बगल देखने में भी अच्छा लगता है बगल में पेड़ है।

ये एक कॉलेज है तीन महला है रंगा हुआ है अगल बगल पेड़ है और और बाइक हो लागल हुआ है और इसमें पढाई होता है बहुत अच्छा कॉलेज है।

और रेलिंग भी रेल है और भी दो साइकिल भी लगा हुआ है।

एक रोड है और फोरविलर गाड़ी है उजला कलर से पेन्ट भी है और एक मकान भी है और मकान में केन्द्रा बैंक है।

मकान है मकान मे किनिंग है और खिड़की लगा हुआ है।

सिमरना कील किलीनिक भि है और बाइक लगा हुआ है और एक पलंग भी है और वाईट कलर से पेन्ट भी करल भी है।

एक आदमी लगा हुआ है टेम्पो में काम कर रहा है देखने में बहुत सुन्दर लग रहा है।